और यहां पर बहुत सारी लाइटिंग चल रही है कुछ पेड़-पौधे दिखाई पड़ रहे हैं।

लड़कों ने ऑरेंज कलर की टीशर्ट पहनी हुई है।

जिसके ऊपर लिखा हुआ है दिल्ली विश्व विद्यालय साउथ कैंपस यहाँ।

यहाँ पर एक रोड दिखाई दे रही है जिसमे बहुत सारी साइकिल पार्क हुई है।

यहाँ पर सात आठ मंजिल की एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

और टेंट लगा हुआ है यहाँ पे एक अशोका चक्र बना हुआ है ।

यहां पे हरे कलर का एक डस्टबीन लगा हुआ है।

कुछ लोग ढाबे के अंदर दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक बारात घर समुदाय भवन दिखाई दे रहा है जो।

यहां पर डाक घर दिखाई पड़ रहा है।

यहां पर एक नर्सरी दिख रही है जहां पर अलग-अलग प्रकार के पेड़ और पौधे मिल रहे हैं।